नाइट रूम में दिखाई दे रहा होगा यहां पे यहां काफी लोग जबरदस्त --

और हरा-भरा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और बहुत ही प्यार दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते है हम क्या बताये।

और चारों साइड में हरा-भरा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा होगा और ये तालाब का पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है देख सकते हैं।

डिजाइने से डिजाइनर स्टेज बना रहा है देख सकते हैं और ये स्कूल का है और ये टीचर --

और ये गणेश भगवान की फोटो हैं देख सकते हैं।

इसलिए यहाँ पर काफी सारे बच्चे वैगरह खड़ा है बूढ़े वैगरह बच्चा लोग देख सकते है बहुत ही --

और इधर से उधर बत्तक चल रहा है देख सकते हैं और इसमे पिछल के बच्चल में आ जाता है काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा है।

लोग है देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे --

काफी मस्त दिखाई दे रहा है आप देख सकते है बहुत ही प्यारा सीन दिखाई दे रहा होगा आपको देख सकते है और बहुत ही जबरदस्त।

और यहाँ पे काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं हरा-भरा दिखाई दे रहा है देख सकते है और --

हेलो गाइज देख सकते हैं ये विष्णु घर है और अब लोग मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पे काफी सारे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपलोगों जबरदस्त देख सकते हैं।

गाड़ियां वगैरह आ रहे हैं उधर से और यहां से जा रहे हैं सुपर डुपर लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को देख सकते हैं।

बहुत सारे बच्चे है यहां और लोग जबरदस्त दिखाई दे रहा।